इस इमेज में आप देख सकते हैं।

जो की गुलाबी कलर और उसकी छत --

एक बाइक है बाइक के सामने --

पेड़ है पेड़ पे लाइट जगमगा रही --

सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई दे रहें हैं और ऐ --

मशीन के ऊपर भी उसके सारे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे है।

वहे एक महिला कुर्सी पे बैठी है जो की सफ़ेद कलर की है वहम महिला वह कुछ --

इस फोटो में एक हरे रंग की कालीन है वो भी सफ़ेद रंग के संगमरमर मर पत्थर पे बिछी हुई है अततह अंदर की ओर सीधी --

और कुछ भवन है सफ़ेद रंग --